यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां पर चिकन बिरयानी देखने को मिल रही है और दिवार पे मिकी माउस बने हुए हैं।

साइड में बहुत ही सुंदर पेंडिक्स पिक्चर वगैरह बनी है।

बहुत सारी फ्लैट बिल्डिंगे घरें देखने को मिल रही है बहुत सारी लाइनें दिखाई दे रही है।

इनमे में से एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का शर्ट पहने गाड़ी है उसका जो कार को देख रहा है।

चलने वाली मशीनें हैं दिखाई दे रही है जो काले कलर का हैं।

दिख रही है और जिसका कलर सीमेंट कलर से किया हुआ है और सीटें लाल हैं।

रिंग पे भी आदमी और लेडीज दिखाई दे रही हैं जो छत के ऊपर भी है।

यह एक भगवान का रथ यात्रा है और किनारे-किनारे में दो घोड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर मैं--

स्पीकर टाइप में तीन दिख रहे हैं इससे बहुत ही सुंदर से रंगबिरंगे फुल से डेकोरेशन किया गया है।

और दो तरफ केले के पत्ते भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और नीचे में--

यह एक कपड़े और जूते का शोरूम है जहां पर कई तरह के शर्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं।

यह एक ओ_य_ओ होटल है जिसका नाम है अवध फूड यह होटल सफेद रंग से बना हुआ हैं।

और बहुत सारी खिड़कियां जिसमें कांच लगी हुई है दिखाई दे रही है पाचिल दिखाई दे रहा है।

लाल और हरे कलर से है और आसमान एकदम--

मट्टी का घड़ा भी दिखाई दे रहा है कुछ इंटीरियर में पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जो हरे रंग के हैं।

बहुत सारी गाड़ी बाइक पार्किंग में है और साइकिल भी--

यह एक बहुत ही सुंदर हॉल एरिया हैं जहां पर मोटे-मोटे काले रंग के सोफे लगे हुए हैं।

और बहुत सारे चेयर्स लगे हैं जहां पर सफेद और लाल रंग के हैं और बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं जो काले कलर के कोट पहने हुए हैं।

और एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ पर फूल टंगा हुआ है और कुछ साइकिलें भी दिखाई दे रही हैं जो स्टैंड की हुई है।

दीवार पे बहुत सारी मैटे वगैरह डिजाइन के लिखे हुए हैं.

और बहुत सारी स्कूटरें पार्क की हुई है और स्कूटी पार्क किया हुआ है एक बाइक के ऊपर एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है जो ब्लू और सफ़ेद में है।

और एक लेडीज जो साड़ी पेहेन के खड़ी है किनारे में एक आदमी शर्ट पेहने बोर्ड के तरफ से कुछ पढ़ रहा है और एक पंखा दिखाई दे रहा है।

अच्छे छोटे-छोटे लाइट्स भी दिख रहे हैं और गेट खुला हुआ है ग्रिल वगैरह लगा हुआ है।

पीछे में कुछ सोफे वगैरह भी बने हुए हैं और कुछ लकड़ियां और फर्श सफेद रंग के टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रही हैं।

बैठने की जगह भी बनी हुई है जिसमें आदमी लेडी --

और पाचिल ग्रिल टाइप में दिखाई दे रहे हैं और लोहे के इंटीरियर भी बीच में लगे खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां पीले और काले में है गेट भी दिख रहा है।